इस फोटो में मुझे ट्रक दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे बहुत सारे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कार दिखाई दे रहीं हैं।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

इस फोटो में मुझे कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे पर्दे दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे टी_वी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे साड़ी की दुकान दिखाई दे रही है।